यहां पे कुछ लाइटें भी लगाई गई है और यह जगह देखने में काफी सुंदर लग रही है।

बहुत बड़ा रेड कारपेट दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग डिजाइन बनाई गई है।

यहा पे कुछ बोतल कुछ नेल पालिश और कुछ परफ्यूम दिखाई दे रहे है।

दो तीन कुर्सी भी लगे हुए हैं कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं नीचे में एक सोलर प्लेट भी दिखाई दे रहा--

यहां पे बड़े बड़े पत्थर और चट्टान दिखाई दे रहे हैं चट्टान के पास में थोड़ी सी रेड स्वाइल भी दिखाई दे रही है।

इसमें और भी चीज और भी सामान रखे गए हैं।

उसके बगल में सी_पी_यू और एक बोर्ड लगाया गया है।

इसमें कुछ पंडित जी कुछ कार्यकर्ता और कुछ मेंबर शामिल है।

इस तस्वीर में एक पूजा का कमरा दिखाई दे रहा है जहां पे महादेव की पूजा करने का स्थान बनाई गई है।

पे ऊपर में कुछ पत्ते और एक रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है।